सेक्टर बारह यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। स्विफ्ट जिसका ग्रे कलर है। वो गाड़ी वर्क शॉप पे खड़ी हुई है।